ये अच्छा दिखता हुआ बोहोत ही मजेदार दिखता हुआ एक आदमी का तस्वीर दिखता हुआ यहाँ पर बोहोत ही अच्छा यहाँ पर रफ़्तार बोहत ही अच्छा रफ़्तारी के साथ यहाँ फुगा -उगा लगाए है बोहउत ही अच्छा यहाँ पर दिख भी रहा है।

बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा दिखता हुआ और बहुत ही मजेदार दिखता हुआ--

बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखता हुआ और बहुत ही अच्छा शानदार यहाँ पर दिखता हुआ और बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा दिखता हुआ--